यहाँ लाइन से कबर्ड लगे हुए हैं बहुत ही अच्छे कलर में अच्छे से बने हुए हैं कबर्ड लाइन से डाले हुए हैं।

यहाँ लाइन से बैट लगी हुई है उनके नीचे लाइन से बॉल एक कतार में लगे हुए हैं।

एक बहुत बड़ा मैदान है बहुत सारे छोटे-छोटे पेड़ लगे हुए हैं।

बैनर पे लगा हुआ है कैनेरा बैंक उसके बाहर दो आदमी लोग खड़े हैं आजू-बाजू में गाड़ी लगी है।

एक ढाबा है ढाबे को अच्छी तरह से लाइटिंग से सजाया गया है बाहर बाइक गाड़ियां लाइन से खड़ी एक आदमी जा रहा है।

यहाँ पे शॉप का उद्घाटन है एक सलून है।

एक शॉप है शॉप में बहोत सारे साबुन शैंपू बहोत सारे लगे हुए है नीचे भी समान लगा हुआ है।

यहां पर एक घर बन रहा है। बहोत सारे लोग काम कर रहे हैं सीढ़ियां रखी हुई है गमले रखे हुए लाइन से--

मैदान है मैदान में झूला है एक लड़का झूला खेल रहा है उसके पीछे बी मैदान है वहाँ पे भी गाड़ियाँ लगी है कुछ बच्चे लोग खेल रहें हैं पेड़ लगे हुए हैं।

यहाँ पे कुछ पूजा चल रही है सब लोग पूजा करें बच्चे आदमी औरतें सब खड़े हैं लाइन से बैलून लगे हुए झाड़ लगे हुए हैं।

हरा भरा पेड़ है एक उसके सामने कुछ घरें है उसके सामने साइड में भी बहोत सारे घर है लाइन से।

यहाँ एक शॉप है शॉप के ऊपर बैनर लगा है गांधी डेंटल क्लीनिक उस पे कांटेक्ट नंबर डॉक्टर का नाम लिखा हुआ है।

एक फंक्शन चल रहा है फंक्शन में पूजा हो रही है बहोत सारी लड़कियां खड़ी है आजू बाजू में वे सब पूजा का सामान रखा हुआ है बच्चे लोग भी है।

कांच की पूरी शॉप है दो माले की शॉप है ऊपर भी पर्दे ल--

एक बहुत बड़ा हॉल है हॉल के अंदर बहुत सारी चेयर टेबल लगे हुए हैं उसके बाजू में बाहर काउंटर है चेयर लगी है।

यहाँ पर एक शॉप है दो शॉप लाइन से हैं दोनों शॉप बंद हैं शॉप के ऊपर बैनर लगा हुआ है बाजू में बिल्डिंग बनी हुई है और शॉप बंद है।

रात का टाइम है गेट को बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया गया है।

गजरे से सजाया गया है बाहर एक आदमी वाचमैन बैठा है।

एक बहुत बड़ी स्कूल है स्कूल के बाहर लाइन से येलो कलर की बसें खड़ी है उसके बाहर सब लड़कियां नीचे बैठ के योगा कर रही स्कूल की--

एक बहुत बड़ा मैदान है मैदान के आजूबाजी में बिल्डिंगें है मैदान में झाड़ लगे हुए लाइन से एक बेंच है।

बहोत बड़ा मैदान हैं गार्डन हैं गार्डन में बहोत सारी बैंचेस लगी हुई है आजू बाजू में बहोत सारे पेड़ लगे हुए पूरा मैदान हरा भरा है।